सेल्फी खींच रहा है देखो कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए लैन से जंगल टाइप का लगा हुआ है झरना बहुत तेज गिर रहा है।

देख सकते हैं एक ग्राउंड है जिसमें मैच चल रहा है उधर कि कुछ मैच के लिए कुछ स्टंप के लिए कुछ फील्डिंग के लिए खड़े हैं लोग।

कुछ से ड्राइंग कर रहा है अच्छे बच्चे हैं जो शक्ल नहीं दिखा रही देखो कि शक्ल नहीं दिख रहा इनका।

देख सकते हो कि ये एक फैक्ट्री है फैक्ट्री में देखो कलशे रखे हुए हैं।

सामान रखे है सीटे रखी हुई देखो यहां कुर्सी उर्सी रखी हुए--

और रात का टाइम है लाइट जल रही है और मैच चल रहा है साथ साथ पीछे में देखो कि बैकग्राउंड में खा ई घास ही घास दिख रही है और लाइटिंग भी चल नहीं रही--

आजू बाजू दिखागे सीढ़ी गई है ऊपर देखोगे एक तबज्जा गया है।

ऊपर देखो बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं दिवालों में चट्टान की दिवाल है यह और देखो कि पेड़ लगा हुआ है पेड़ के नीचे में देखो बहोत सारे पेड़ के जड़ों के टुकड़े डले हुए हैं ऊपर देखो आसमान खुला --